इसमें ओनियन स्मार्ट क्लास का बोर्ड भी लगा हुआ है। इस बिल्डिंग का रंग वाईट और ब्राउन कलर है।

ये आप लोग देख सकते है हमारे सामने एक बहुत सुंदर मंदिर है ये मंदिर संगमरमर का बना हुआ है इस मंदिर के चारों तरफ हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

आप लोग देख सकते है ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए हड्डी का बना ढांचा रखा हुआ है जो ऑक्सीजन लगाए हुए है ये ब्लू कलर की सीट पर लेटा हुआ है।

सामने की तरफ बोतल लगी रखी हुई हैं और ये रेक ओरेंज और वाइट कलर की है जो देखने में बोहोत अच्छी लग रही है।